और बाहर में बहुत सारा आदमीन भी दिखाई दे रहे हैं और कारपेट भी बिछाया गया है।

बगल में बहोत सारा बिल्डिंग बनाया गया और बिल्डिंग में बोहोत सारा खिड़की दिखाई दे रहा--

रूम मे नक्शा निकलने वाला प्रिंटर भी रखा गया है और रूम में कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग का दीवार नीला और सफेद है बिल्डिंग में लाइट भी लगाया गया है।

यह एक छठ घाट का दृश्य है यहां पे बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहे है।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

मछली में आंख भी दिखाई दे रहा और मछली का बहुत सारा पैर भी दिखाई दे रहा--

और बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है और यहां बहुत सारा आदमीन भी है।

और काउंटर में बहुत सारा डिब्बा रखा गया है डिब्बा लाल और हरा और रूम में कुर्सी भी रखा गया है टेबुल भी है।

यहां पर रेल का पटरी भी बिछाया गया है और उसमें ट्रेन भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा छरी भी दिखाई दे रहा है और बगल में बहुत सारा पेड़ पौधा है।

रूम में की दीवार में टी_वी भी लगाया गया है रूम की दीवार में बहुत सारा पोस्टर चिपकाया गया।

रूम में बोर्ड बनाया गया है और उसमें मीटर भी लगाया गया है।

रूम में काउंटर बनाया गया और काउंटर में सीसा भी लगाया गया और बहुत सारा सामान रखा गया और काउंटर में चश्मा भी रखा गया है।

यह एक बहुत बड़ा चर्च का रूम है इस रूम का दीवार सफेद है और रूम में लाइट भी लगाया गया।